है घर में बफर सिस्टम हो रहा है कुछ प्लेट रखे हुए है कुछ फोटो बने हुए है कुछ कंडील सा लाइट जल रहा है।